लोग हैं लोग दी हैं।

मंडी दिख रहा है शब्जी मंडी।

ब्लू कलर के साड़ियाँ --

बहोत लोग खड़े हैं और छोटा-सा बच्चे को गोद में लिए हैं। लगभग दो-तीन साल का है।

का अ वो है|

और गोल्डन कलर के अंदर रूम है।

ग्राउंड बना हुआ है उसमे --

जंग लगा हुआ दिख रहा है कार ।

यह कोई गली दिख रहा है किसी शेहेर का --

यह कोई कॉलेज दिख रहा है।

चेयर पे बैठा हुआ है और बुक बहुत सारी बुक --